और यह जो शादी होती है काफी खूबसूरत नजारा लगने लग --

ये एक माल की तस्वीर है जहाँ पर के सौ रुपये से और हम कितना भी महंगा ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये सेल लगी हुई है और ये सेल सौ रुपये यानी कि नाइन वन हन्डर्ड रूपीस् सेल है।

और इहां पर अंदर खिड़की से बाल्कनी पर देखते है।

हम इस तस्वीर में देख रहे हैं जो तस्वीर ये तस्वीर एक मस्जिद या मदरसे की तस्वीर है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में और हम इसमें देख रहे हैं --

और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यह पार्किंग बहुत ही पसंद आता है लोग बहुत दूर से घूमने आते हैं और यह बहुत सारे लोगों को पसंद होता है यहां पर बैठना घूमना --

तस्वीर है है एक तस्वीर है यहाँ पर मोल है।

रेड कलर है वाइट कलर है ग्रीन कलर है ब्लैक कलर है येलो कलर है नीला कलर है।

तस्वीर में देख रहे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है चल रही है।

और यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग जहां बहुत-बहुत काफी दूर से घूमने के लिए आते हैं।

हम इस तस्वीर मे देख रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है।

ये बहुत प्यारी खूबसूरत तस्वीर है।

और ये येलो कलर का ये येलो कलर है।

और यहाँ पर लोग बैठते हैं कहीं का स्टेशन है ये।

और ये कार एक मकेनिक की दुकान है। यहाँ पर कार ओर रिपेयरिंग होता है।